पंखा लगा हुआ हैं पंडाल का कलर ब्लैक और पिंक और येलो कांबिनेशन में किया गया हैं।

उनका जो मूर्ति है वो वाइट कलर से और क्रीम कलर के पेंट किया गया हुआ है।

इसमें एक काउंटर भी है लगा वो दिख रहा है और इसमें एक व्यक्ति भी दिख रहा है।

यह एक रास्ता है जिसमें बहुत भीड़ लगे हुए हैं और बहुत सारे टोटो भी खड़े हैं साइकिल भी है।

और मिरर में बहुत सारी लाइटें भी दिख रही है।

इसमें बहोत सारे ईंटें भी दिख रहे हैं इसके अगल बगल बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

यह फिटनेस जिम है जिसमें बहुत सारे डंबल्स दिख रहे हैं इसका--

इसमें दो बोर्ड दिख रहे है चार बोर्ड दिख रहे है और एक पंखा भी दिख रहा--

बगल में भी बहुत सारे घास पहाड़ जैसे लग रहे हैं इसमें एक दूर में एक ब्रिज भी दिख रहा है।

यहां एक फादर भी है और एक सिस्टर भी दिख रही है।

गाड़ी का टायर भी दिख रहा है।

यहां कोयले से सब इसमें काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे मजदूर दिख रहे हैं।

यहां स्टेज बना हुआ है जिसमें दो तीन स्पीकर दिख रहे हैं एक चेयर दिख रहा है।

इसके बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें फास्ट फूड लिखा हुआ है।

जिसमें बहोत रंग बिरंगे गुब्बारे लगाए हुए हैं।

इसके बगल में एक बड़ा सा टेबल है और बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं ये सब शायद डॉक्टर है।

एक बिल्डिंग भी दिख रहा है जिसमें दो पानी की टंकी है।

बहोत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं बगल में बहोत बिल्डिंगे भी हैं।

पीले कलर का भी गाड़ी है और एक वाइट कलर का है।

और एक उसमें दरवाजा भी है जो दरवाजे के सामने दो व्यक्ति खड़े हैं।

एक व्यक्ति भी दिख रहा है जो ब्लू कलर का शर्ट पहना है।

ये फल और सब्जी का दुकान है जिसपे एक खटिया लगा हुआ है।

प्लेट के नीचे एक कटन लगा हुआ है जो कि रेड और व्हाइट में है।

के अगल बगल बहोत सी सारे क्रीम और उसमें बहोत ही ज्यादा क्रीमी दिख रही है।

यहां एक बहुत बड़ा गेट दिख रहा है जिसमें सदर अस्पताल देवघर लिखा हुआ है।

यह चिल्ड्रन पार्क है जिसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं इसमें फिसलने के लिए भी बनाया गया है और इसमें घूमने के लिए भी दिया गया हुआ है।

ये दो टेबल भी दिख रहा है बच्चे का भी प्रोडक्श भी दिख रहा है।